सामने एक किरयाना स्टोर दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी ए_सी को ठीक कर रहा है।

का स्टीयरिंग दिखाई दे रहा है है इसका--

सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसमें--

वर्धमान हॉस्पिटल लिखा हुआ है और इसके एंट्री गेट पर--